ऊपर नीला आकाश दिखाई दे रहा है जो देखने में बोहत ही सुन्दर लग रहा है और यह बिल्डिंग बोहत प्यारी लग रही है।

ऊपर लाइटें लगी हुई है जो की सफ़ेद रंग की है इस पूरे शोरूम का कलर लाल और वाइट है।